सब्जी मंडी है और यहाँ पर लगता है और यहाँ पे बैगन वागेरह छिल रहे हैं कुछ न कुछ हो ही रहा है मशीन है यहाँ --